यहां पर एक अ चित्र दिखाई दे रहा है सामने एक अ बहुत बड़ा मॉल है। यहां पर बहुत सारी लाइट लगी हुई है। बहुत सारे कपड़े यहां पर--

प्लेट में चावल है दाल है सब्जी है खीरा प्याज है चम्मच भी लगे हैं ।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है सामने एक बिल्डिंग नजर आ रहा है।

आजू-बाजू में हरे-हरे घास जैसे दिख रहे हैं बोहोत ही अच्छा लग रहा है।

यहां पर एक अ चित्र दिखाई दे रहा है सामने देखने पर ऐसा लग रहा है कि शाम का समय है सूरज ढलता हुआ दिखाई दे रहा है।

गार्डन जैसा है मैदान जैसा और यहां पर चारों तरफ हरियाली दिख रहा है।

फूल-वूल लगे हुए हैं। पेड़-पौधे लगे हुए हैं गमलो में और --

बहोत सारी लाइट जल रही है दूर से देखने पर।

बोहोत बड़े-बड़े पहाड़ जैसा दिख रहा है और मैदान जैसा और बीच-बीच में पानी जैसा दिख रहा है तालाब का ।